मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
2015 एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आख़िरी मन की बात
अगले मन की बात 2016 में होगी
अभीअभी हम लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया और अब नये वर्ष के स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं
भारत विविधताओं से भरा हुआ है
त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है
एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा आया नहीं
एक प्रकार से हर त्योहार दूसरे त्योहार की प्रतीक्षा को छोड़कर चला जाता है
कभीकभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर त्योहार ड्राइवेन इकोनॉमी भी है
समाज के ग़रीब तबक़े के लोगों की आर्थिक गतिविधि का वो कारण बन जाता है
मेरी तरफ़ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुतबहुत शुभकामनायें और 2016 के नववर्ष की भी बहुतबहुत शुभकामनायें
2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियाँ ले करके आये
नया उमंग नया उत्साह नया संकल्प आपको नयी ऊंचाइयों पर पहुंचाए
दुनिया भी संकटों से मुक्त हो चाहे आतंकवाद हो चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे प्राकृतिक आपदायें हों चाहे मानव सृजित संकट हो
मानव जाति सुखचैन की ज़िंदगी पाये इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है
आप तो जानते ही हैं कि मैं टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करता रहता हूँ उससे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं
माइगोव मेरे इस पोर्टल पर मैं काफी नज़र रखता हूँ
पुणे से श्रीमान गणेश वी सावलेशवारकर उन्होंने मुझे लिखा है कि ये सीजन टूरिस्ट की सीजन होती है
बहुत बड़ी मात्रा में देशविदेश के टूरिस्ट आते हैं
लोग भी क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने जाते हैं
टूरिज्म के क्षेत्र में बाकी सब सुविधाओं की तरफ़ तो ध्यान दिया जाता है लेकिन उन्होंने कहा है कि जहाँजहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट प्लेस है यात्रा धाम है प्रवास धाम है वहाँ पर स्वच्छता के संबंध में विशेष आग्रह रखना चाहिये
हमारे पर्यटन स्थल जितने साफ़सुथरे होंगे दुनिया में भारत की छवि अच्छी बनेगी
मैं गणेश जी के विचारों का स्वागत करता हूँ और मैं गणेश जी की बात को देशवासियों को पहुंचा रहा हूँ और वैसे भी हम अतिथि देवो भव कहते हैं तो हमारे यहाँ तो जब अतिथि आने वाला होता है तो घर में हम कितनी साजसज्जा और सफाई करते हैं
तो हमारे पर्यटन स्थल पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हमारे यात्रा धामों पर ये सचमुच में एक विशेष बल देने वाला काम तो है ही है
और मुझे ये भी खुशी है कि देश में स्वच्छता के संबंध में लगातार ख़बरें आती रहती हैं
मैं डे ओने से इस विषय में मीडिया के मित्रों का तो धन्यवाद करता ही रहता हूँ क्योंकि ऐसी छोटीछोटी अच्छीअच्छी चीजें खोजखोज करके वो लोगों के सामने रखते हैं
अभी मैंने एक अखबार में एक चीज़ पढ़ी थी
मैं चाहूँगा कि देशवासियों को मैं बताऊँ
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भोजपुरा गाँव में एक बुज़ुर्ग कारीगर दिलीप सिंह मालविया
अब वो सामान्य कारीगर हैं जो मेसों का काम करते हैं मज़दूरी करते हैं
उन्होंने एक ऐसा अनूठा काम किया कि अखबार ने उनकी एक कथा छापी
और मेरे ध्यान में आई तो मुझे भी लगा कि मैं इस बात को आप तक पहुचाऊँ
छोटे से गाँव के दिलीप सिंह मालविया उन्होंने तय किया कि गाँव में अगर कोई मटीरियल प्रोवाइड करता है तो शौचालय बनाने की जो मज़दूरी लगेगी वो नहीं लेंगे और वो मुफ़्त में मेसों के नाते काम करते हुए शौचालय बना देंगे
भोजपुरा गाँव में उन्होंने अपने परिश्रम से मज़दूरी लिये बिना ये काम एक पवित्र काम है इसे मान करके अब तक उन्होंने 100 शौचालयों का निर्माण कर दिया है
मैं दिलीप सिंह मालविया को ह्रदय से बहुतबहुत बधाई देता हूँ अभिनन्दन देता हूँ
देश के संबंध में निराशा की बातें कभीकभी सुनते हैं
लेकिन ऐसे कोटिकोटि दिलीप सिंह हैं इस देश में जो अपने तरीक़े से कुछनकुछ अच्छा कर रहे हैं
यही तो देश की ताकत है
यही तो देश की आशा है और यही तो बातें हैं जो देश को आगे बढ़ाती हैं और तब मन की बात में दिलीप सिंह का गर्व करना उनका गौरव करना बहुत स्वाभाविक लगता है
अनेक लोगों के अथक प्रयास का परिणाम है कि देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है
क़दम से क़दम मिला करके सवा सौ करोड़ देशवासी एकएक क़दम ख़ुद भी आगे बढ़ रहे हैं देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं
बेहतर शिक्षा उत्तम कौशल एवं रोज़गार के नित्य नए अवसर
चाहे नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने की बात हो
वैश्विक फ़लक पर ईज़ ओएफ डोइंग बिजनेस में सुधार व्यापार और नये व्यवसाय करने के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराना
सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दरवाज़े तक नहीं पहुँच पाते थे मुद्रा योजना के तहत आसान ऋण उपलब्ध करवाना
हर भारतीय को जब ये पता चलता है कि पूरा विश्व योग के प्रति आकर्षित हुआ है और दुनिया ने जब अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया और पूरा विश्व जुड़ गया तब हमें विश्वास पैदा हो गया कि वाह ये तो है न हिन्दुस्तान
ये भाव जब पैदा होता है न ये तब होता है जब हम विराट रूप के दर्शन करते हैं
यशोदा माता और कृष्ण की वो घटना कौन भूलेगा जब श्री बालकृष्ण ने अपना मुँह खोला और पूरे ब्रह्माण्ड का माता यशोदा को दर्शन करा दिये तब उनको ताक़त का अहसास हुआ
योग की घटना ने भारत को वो अहसास दिलाया है
स्वच्छता की बात एक प्रकार से घरघर में गूंज रही है
नागरिकों का सहभाग भी बढ़ता चला जा रहा है
आज़ादी के इतने सालों के बाद जिस गाँव में बिजली का खम्भा पहुँचता होगा शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को या जो बिजली का उपभोग करते हैं उनको कभी अंदाज़ नहीं होगा कि अँधेरा छंटता है तो उत्साह और उमंग की सीमा क्या होती है
भारत सरकार का और राज्य सरकारों का ऊर्जा विभाग काम तो पहले भी करता था लेकिन जब से गांवों में बिजली पहुँचाने का 1000 दिन का जो संकल्प किया है और हर दिन जब ख़बर आती है कि आज उस गाँव में बिजली पहुँची आज उस गाँव में बिजली पहुँची तो साथसाथ उस गाँव के उमंग और उत्साह की ख़बरें भी आती हैं
अभी तक व्यापक रूप से मीडिया में इसकी चर्चा नहीं पहुँची है लेकिन मुझे विश्वास है कि मीडिया ऐसे गांवों में ज़रूर पहुंचेगा और वहाँ का उत्साहउमंग कैसा है उससे देश को परिचित करवाएगा और उसके कारण सबसे बड़ा तो लाभ ये होगा कि सरकार के जो मुलाज़िम इस काम को कर रहे हैं उनको एक इतना सैटिस्फैक्शन मिलेगा इतना आनंद मिलेगा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो किसी गाँव की किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने वाला है
किसान हो ग़रीब हो युवा हो महिला हो क्या इन सबको ये सारी बातें पहुंचनी चाहिये कि नहीं पहुंचनी चाहिये पहुंचनी इसलिये नहीं चाहिये कि किस सरकार ने क्या काम किया और किस सरकार ने काम क्या नहीं किया पहुंचनी इसलिये चाहिए कि वो अगर इस बात का हक़दार है तो हक़ जाने न दे
उसके हक़ को पाने के लिए भी तो उसको जानकारी मिलनी चाहिये न हम सबको कोशिश करनी चाहिये कि सही बातें अच्छी बातें सामान्य मानव के काम की बातें जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचती हैं पहुंचानी चाहिए
यह भी एक सेवा का ही काम है
मैंने अपने तरीक़े से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है
मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूँ
लेकिन जो मैं कह रहा हूँ तो कुछ मुझे भी करना चाहिये न
एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल फ़ोन पर नरेंद्र मोदी अप्प को डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकता है
और ऐसी छोटीछोटीछोटी बातें मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ
और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं
आप भी अपने तरीक़े से ज़रूर इस प्रयास में जुड़िये सवा सौ करोड़ देशवासियों तक पहुंचना है
आपकी मदद के बिना मैं कैसे पहुंचूंगा
आइये हम सब मिलकर के सामान्य मानव की हितों की बातें सामान्य मानव की भाषा में पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें उनके हक़ की चीजों को पाने के लिए
मेरे प्यारे नौजवान साथियो 15 अगस्त को लाल किले से मैंने स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया उसके संबंध में एक प्राथमिक चर्चा की थी
उसके बाद सरकार के सभी विभागों में ये बात चल पड़ी
क्या भारत स्टार्टअप कैपिटल बन सकता है क्या हमारे राज्यों के बीच नौजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नयेनये स्टार्टअप्स अनेक विथ स्टार्टअप्स नयेनये इनोवेशंस चाहे मैन्यूफैक्चरिंग में हो चाहे सर्वाइस सेक्टर में हो चाहे एग्रीकल्चर में हो
हर चीज़ में नयापन नया तरीका नयी सोच दुनिया इनोवेशन के बिना आगे बढ़ती नहीं है
स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आयी है
मेरे नौजवान साथियो 16 जनवरी को भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया उसका पूरा एक्शनप्लान लॉन्च करने वाली है
कैसे होगा क्या होगा क्यों होगा एक ख़ाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा
और इस कार्यक्रम में देशभर की आईआईटीएस आईआईएमएस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज निट्स जहाँजहाँ युवा पीढ़ी है उन सबको लाइवकनेक्टिविटी के द्वारा इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा
स्टार्टअप के संबंध में हमारे यहाँ एक सोच बंधीबंधाई बन गयी है
जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो या इत प्रोफेशन हो ये स्टार्टअप उन्हीं के लिए है जी नहीं हमें तो उसको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाना है
ग़रीब व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है उसको शारीरिक श्रम पड़ता है लेकिन कोई नौजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज़ बना दे कि ग़रीब को मज़दूरी में थोड़ी सुविधा हो जाये
मैं इसको भी स्टार्टअप मानता हूँ
मैं बैंक को कहूँगा कि ऐसे नौजवान को मदद करो मैं उसको भी कहूँगा कि हिम्मत से आगे बढ़ो
मार्केट मिल जायेगा
उसी प्रकार से क्या हमारे युवा पीढ़ी की बुद्धिसंपदा कुछ ही शहरों में सीमित है क्या ये सोच गलत है
हिन्दुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है उन्हें अवसर चाहिये
ये स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया कुछ शहरों में सीमित नहीं रहना चाहिये हिन्दुस्तान के हर कोने में फैलना चाहिये
और इसे मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि इस बात को हम आगे बढाएं
16 जनवरी को मैं ज़रूर आप सबसे रूबरू हो करके विस्तार से इस विषय में बातचीत करूंगा और हमेशा आपके सुझावों का स्वागत रहेगा
प्यारे नौजवान साथियो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्मजयंती है
मेरे जैसे इस देश के कोटिकोटि लोग हैं जिनको स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा मिलती रही है
1995 से 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है
इस वर्ष ये 12 जनवरी से 16 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाला है
और मुझे जानकारी मिली कि इस बार की उनकी जो थीम है क्योंकि उनका ये इवेंट थेम बेस्ड होता है थीम बहुत बढ़िया है इंडियन यूथ ओन डेवलपमेंट स्किल एंड हार्मोनी
मुझे बताया गया कि सभी राज्यों से हिंदुस्तान के कोनेकोने से 10 हज़ार से ज़्यादा युवा इकट्ठे होने वाले हैं
एक लघु भारत का दृश्य वहाँ पैदा होने वाला है
युवा भारत का दृश्य पैदा होने वाला है
एक प्रकार से सपनों की बाढ़ नज़र आने वाली है
संकल्प का एहसास होने वाला है
इस यूथ फेस्टिवल के संबंध में क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं मैं ख़ास कर के युवा दोस्तों से आग्रह करता हूँ कि मेरी जो नरेंद्र मोदी अप्प है उस पर आप डायरेक्टली मुझे अपने विचार भेजिए
मैं आपके मन को जाननासमझना चाहता हूँ और जो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल में रिफ्लेक्ट हो मैं सरकार में उसके लिए उचित सुझाव भी दूँगा सूचनाएँ भी दूँगा
तो मैं इंतज़ार करूँगा दोस्तो नरेंद्र मोदी अप्प पर यूथ फेस्टिवल के संबंध में आपके विचार जानने के लिए
अहमदाबाद गुजरात के दिलीप चौहान जो एक विजुअली चैलेंज्ड टीचर हैं उन्होंने अपने स्कूल में एक्सेसिबल इंडिया डे उसको मनाया
उन्होंने मुझे फ़ोन कर के अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं
सिर वे सेलिब्रेटेड एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन इन माय स्कूल
आई एएम आ विजुअली चैलेंज्ड टीचर एंड आई एड्रेस्ड 2000 चिल्ड्रेन ओन थे इश्यू ओएफ डिसेबिलिटी एंड होव वे कैन स्प्रेड अवेयरनेस एंड हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पियोपल
एंड थे स्टूडेंट्स रिस्पांस वास फैंटास्टिक वे एंजॉयड इन थे स्कूल एंड थे स्टूडेंट्स वेरे इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टो हेल्प थे डिजेबल्ड पियोपल इन थे सोसाइटी
आई थिंक इत वास आ ग्रेट इनिशिएटिव बाय यू
दिलीप जी आपका बहुतबहुत धन्यवाद
और आप तो स्वयं इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं
आप भलीभाँति इन बातों को समझते हैं और आपने तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेली होंगी
कभीकभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का अवसर आता है तो हमारे मन में ढेर सारे विचार आते हैं
हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नज़रिया भी व्यक्त करते हैं
कई लोग होते हैं जो हादसे के शिकार होने के कारण अपना कोई अंग गवाँ देते हैं
कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षति रह जाती है
और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेकअनेक शब्द प्रयोग हुए हैं लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रति भी चिंतन चलता रहा है
हर समय लोगों को लगा कि नहींनहींनहीं ये उनके लिए ये शब्द की पहचान अच्छी नहीं लगती है सम्मानजनक नहीं लगती है
और आपने देखा होगा कि कितने शब्द आ चुके हैं
कभी हैंडीकैप्ड शब्द सुनते थे तो कभी डिसेबल शब्द सुनते थे तो कभी स्पेशली एबल्ड पर्सन्स अनेक शब्द आते रहते हैं
ये बात सही है कि शब्दों का भी अपना एक महत्व होता हैआई इस वर्ष जब भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान का प्रारंभ किया उस कार्यक्रम में मैं जाने वाला था लेकिन तमिलनाडु के कुछ ज़िलों में और ख़ास कर के चेन्नई में भयंकर बाढ़ के कारण मेरा वहाँ जाने का कार्यक्रम बना उस दिन मैं उस कार्यक्रम में रह नहीं पाया था
लेकिन उस कार्यक्रम में जाना था तो मेरे मन में कुछनकुछ विचार चलते रहते थे
तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है कोई क्षति दी है एकाध अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रूप में जानते हैं
लेकिन कभीकभी उनके परिचय में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आँखों से उसकी एक कमी दिखती है लेकिन ईश्वर ने उसको कोई एक्सट्रा पॉवर दिया होता है
एक अलग शक्ति का उसके अन्दर परमात्मा ने निरूपण किया होता है
जो अपनी आँखों से हम नहीं देख पाते हैं लेकिन जब उसे देखते हैं काम करते हुए उसे अपने काबिलियत की ओर तो ध्यान जाता है
अरे वाह ये कैसे करता है तो फिर मेरे मन में विचार आया कि आँख से तो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्सट्रा पॉवर अतिरिक्त शक्ति है
और तब जाकर के मेरे मन में विचार आया क्यों न हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें
ये वो लोग हैं जिनके पास वो ऐसा एक अंग है या एक से अधिक ऐसे अंग हैं जिसमें दिव्यता है दिव्य शक्ति का संचार है जो हम सामान्य शरीर वालों के पास नहीं है
मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लग रहा है
क्या मेरे देशवासी हम आदतन विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द को प्रचलित कर सकते हैं क्या मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे
उस दिन हमने सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की है
इसके तहत हम फिजिकल और वर्चुअल दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य बनायेंगे
स्कूल हो अस्पताल हो सरकारी दफ़्तर हो बस अड्डे हों रेलवे स्टेशन में रैम्प्स हो एक्सेसिबल पार्किंग एक्सेसिबल लिफ्ट्स ब्रेल लिपि कितनी बातें हैं
इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए टेक्नोलॉजी चाहिए व्यवस्था चाहिए संवेदनशीलता चाहिएI इस काम का बीड़ा उठाया हैआई जनभागीदारी भी मिल रहीं है
लोगों को अच्छा लगा है
आप भी अपने तरीके से ज़रूर इसमें जुड़ सकते हैं
मेरे प्यारे देशवासियो सरकार की योजनायें तो निरंतर आती रहती हैं चलती रहती हैं लेकिन ये बहुत आवश्यक होता है कि योजनायें हमेशा प्राणवान रहनी चाहियें
योजनायें आखरी व्यक्ति तक जीवंत होनी चाहियें
वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहियें
आखिर योजना बनती है सामान्य व्यक्ति के लिए ग़रीब व्यक्ति के लिए
पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्रयास किया कि योजना के जो हक़दार हैं उनके पास सरलता से लाभ कैसे पहुँचे
हमारे देश में गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती है
करोड़ों रुपये उसमें जाते हैं लेकिन ये हिसाबकिताब नहीं था कि जो लाभार्थी है उसी के पास पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं
सही समय पर पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे हैं
सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया
जनधन एकाउंट हो आधार कार्ड हो इन सब की मदद से विश्व की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर शीम के द्वारा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी पहुँचना
देशवासियों को ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि अभीअभी गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर शीम है जो सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है
पहल नाम से ये योजना प्रचलित है और प्रयोग बहुत सफल रहा है
नवम्बर अंत तक करीबकरीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पहल योजना के लाभार्थी बन चुके हैं 15 करोड़ लोगों के खाते में बैंक एकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे हैं
न कोई बिचौलिया न कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत न कोई भ्रष्टाचार की सम्भावना
एक तरफ़ आधार कार्ड का अभियान दूसरी तरफ़ जनधन एकाउंट खोलना तीसरी तरफ़ राज्य सरकार और भारत सरकार मिल कर के लाभार्थियों की सूची तैयार करना
उनको आधार से और एकाउंट से जोड़ना
ये सिलसिला चल रहा है
इन दिनों तो मनरेगा जो कि गाँव में रोजगार का अवसर देता है वो मनरेगा के पैसे बहुत शिकायत आती थी
कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मजदूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा होने लगे हैं
स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप में भी कई कठिनाइयाँ होती थीं शिकायतें भी आती थीं उनमें भी अब प्रारंभ कर दिया है धीरेधीरे आगे बढ़ाएंगे
अब तक करीबकरीब 40 हज़ार करोड़ रूपये सीधे ही लाभार्थी के खाते में जाने लगे हैं अलगअलग योजनाओं के माध्यम से
एक मोटामोटा मेरा अंदाज़ है करीबकरीब 35 से 40 योजनायें अब सीधीसीधी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के अंदर समाहित की जा रही हैं
मेरे प्यारे देशवासियो 26 जनवरी भारतीय गणतंत्र दिवस का एक सुनहरा पल
ये भी सुखद संयोग है कि इस बार डॉ बाबा साहब अम्बेडकर हमारे संविधान के निर्माता उनकी 125वी जयंती है
संसद में भी दो दिन संविधान पर विशेष चर्चा रखी गई थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा
सभी दलों ने सभी सांसदों ने संविधान की पवित्रता संविधान का महत्व संविधान को सही स्वरुप में समझना बहुत ही उत्तम चर्चा की
इस बात को हमें आगे बढ़ाना चाहिए
गणतंत्र दिवस सही अर्थ में जनजन को तंत्र के साथ जोड़ सकता है क्या और तंत्र को जनजन के साथ जोड़ सकता है क्या हमारा संविधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रूप से होती है और होनी भी चाहिए
उसका भी उतना ही महत्व है
लेकिन संविधान कर्तव्य पर भी बल देता है
लेकिन देखा ये गया है कि कर्तव्य की चर्चा बहुत कम होती है
ज्यादा से ज्यादा जब चुनाव होते हैं तो चारों तरफ़ एडवर्टाइजमेंट होते हैं दीवारों पर लिखा जाता है होर्डिंग्स लगाये जाते हैं कि मतदान करना हमारा पवित्र कर्तव्य है
मतदान के समय तो कर्तव्य की बात बहुत होती है लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तव्य की बातें हों
जब इस वर्ष हम बाबा साहेब अम्बेडकर की 125वी जयंती मना रहे हैं तो क्या हम 26 जनवरी को निमित्त बना करके स्कूलों में कॉलेजेस में अपने गांवों में अपने शहर में भिन्नभिन्न सोसायटीज में संगठनों में कर्तव्य इसी विषय पर निबंध स्पर्द्धा काव्य स्पर्द्धा वक्तृत्व स्पर्द्धा ये कर सकते हैं क्या अगर सवा सौ करोड़ देशवासी कर्तव्य भाव से एक के बाद एक कदम उठाते चले जाएँ तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है
लेकिन चर्चा से शुरू तो करें
मेरे मन में एक विचार आता है अगर आप मुझे 26 जनवरी के पहले ड्यूटी कर्तव्य अपनी भाषा में अपनी भाषा के उपरांत अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में अंग्रेज़ी में लिखना है तो अंग्रेज़ी में कर्तव्य पर काव्य रचनाएँ हो कर्तव्य पर एसे राइटिंग हो निबंध लिखें आप
मुझे भेज सकते हैं क्या मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ
माय गोव मेरे इस पोर्टल पर भेजिए
मैं ज़रूर चाहूँगा कि मेरे देश की युवा पीढ़ी कर्तव्य के संबंध में क्या सोचती है
एक छोटा सा सुझाव देने का मन करता है
26 जनवरी जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्या हम नागरिकों के द्वारा स्कूलकॉलेज के बालकों के द्वारा हमारे शहर में जितनी भी महापुरुषों की प्रतिमायें हैं स्टेच्यू लगे हैं उसकी सफाई उस परिसर की सफाई उत्तम से उत्तम स्वच्छता उत्तम से उत्तम सुशोभन 26 जनवरी निमित्त कर सकते हैं क्या और ये मैं सरकारी राह पर नहीं कह रहा हूँ
नागरिकों के द्वारा जिन महापुरुषों का स्टेच्यू लगाने के लिए हम इतने इमोशनल होते हैं लेकिन बाद में उसको संभालने में हम उतने ही उदासीन होते हैं
समाज के नाते देश के नाते क्या ये हम अपना सहज़ स्वभाव बना सकते हैं क्या इस 26 जनवरी को हम सब मिल के प्रयास करें कि ऐसे महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान वहाँ सफाई परिसर की सफाई और ये सब जनताजनार्दन द्वारा नागरिकों द्वारा सहज रूप से हो
प्यारे देशवासियो फिर एक बार नव वर्ष की 2016 की ढेर सारी शुभकामनायें
बहुतबहुत धन्यवाद